चित्र में एक कत्थई रंग की बहुत ऊंची बिल्डिंग दिख रही है उस बिल्डिंग के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

यह शर्मा का डी.जे. दिख रहा है।

हिरण कथई रंग का बहुत ही सुन्दर लग रहा है।